एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

काउंटर दिख रहा है बहुत सारा कुर्सी दिख रहा है।

दीवार लाल और पीला दिख रहा है।

के बगल में बहुत बॉक्स लगा है।

ऊपर सफेद कपड़ा लगा है।

छतरी पर कुछ लगा हुआ है।

दुकान के बाहर शीशा लगा है।

दुकान का दीवार का रंग काला दिख रहा है।

आकृति भगवान का बना हुआ है पीछे का दीवार सफेद दिख रहा है।

चिढ़िया का रंग काला दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक औरत दिख रही है।

दीवार पे बड़ा पोस्टर लगा है कुछ गुब्बारे दिख रहे हैं गुब्बारे का रंग हरा और सफेद और लाल दिख रहा है।

एक दरवाजा दिख रहा है कुछ लोग अंदर दिख रहे हैं कुछ लोग बाहर दिख रहे हैं।

नीचे बहुत सारा कैंडल जल रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारा मकान दिख रहा है।

एक मकान काफी पुराना दिख रहा है मकान का रंग सफेद दिख रहा है।

मकान अभी बन रहा है हरा पेड़-पौधा दिख रहा है एक ताड़ का पेड़ दिख रहा है।

बहोत गुब्बारा दिख रहा है गुब्बारे का रंग लाल और सफ़ेद दिख रहा है हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है।

कुछ लोग दिख रहे हैं एक रिक्शा दिख रहा है काफी हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

कुछ छोटे पौधे दिख रहे हैं।

गेट पूरी तरह सजा हुआ है।

रेलिंग शीशे का है घर में बहुत खिरकी दरवाजा दिख रहा है।

कमरा काफी बड़ा दिख रहा है एक टेबल दिख रहा है।

बहुत सारा लाइट लगा पोल दिख रहा है आसमान नीला दिख रहा है।

सभी लोग मुंह में गमची बांधे हैं।

हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

दोनों लड़का खड़ा दिख रहा है।

यह मैरेज हॉल है बाहर बहुत हरा पेड़ पौधा लगा है।

एक मकान का ईंट दिख रहा है।

यहाँ पानी के फुहारे गिर रहे हैं।

इस तस्वीर में नदी दिख रहा है।